इस इमेज में यहां पर सामने कुछ दुकान दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने एक मॉल दिखाई दे रहा है यहां पर देखिएगा सीढ़ियां भी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर तीन चार कारे खड़ी दिखाई दे रही है और ऊपर दो सफेद पानी की टंकी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहाँ पर एक चिड़ियांघर दिखाई दे रहा है जहाँ पर देखियेगा कुछ हिरन घुमते हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में सामने आकर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहां पर तीन चार बसें खड़ी नजर आ रही है।

एक इमेज में सामने यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति बैठकर काम करता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक अ चट्टान दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा गुफा के अंदर एक लड़का जाता नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक बड़ासा हॉल दिखाई दे रहां हैं जहां पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहें हैं।

इस इमेज में यहां पर एक डाकघर दिखाई दे रहा है और बाहर देखेगा गेट के अंदर एक व्यक्ति जाता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर कुछ रास्ते दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुछ बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर दरवाजे पे यहां पर कुछ मूर्तियां बनी दिखाई दे रही हैं जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रही है।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

इस इमेज पर यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर एक कार की रिपेयरिंग चलती नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक कार दिखाई दे रही है और दूर यहां पर एक मंदिर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर रोड पर एक मोटरसाइकल चलती नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बैठने की बैंचेस और एक व्हाइट बोर्ड भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर देखिएगा कई सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है बाहर यहां पर लाल कलर की कुर्सी भी रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक दुकानें दिखाई दे रही है ऊपर देखिएगा छतरी का डेकोरेशन नजर आ रहा है।